यह एक फलो की दुकान की फोटो है यहाँ अलग-अलग प्रकार की फल दिखाई दे रहे है जैसे की सेब संतरे--

उसके बाहर की तरफ बॉउन्ड्रीवॉल बनी हुई है जो की लोहे की है जिसके उपर सफ़ेद और पिले रंग की दिवार भी बनी हुए है यहाँ पे एक पिंक सेड भी लगा हुआ है।

इस फोटो मे हमें एक इमारत दिखाई दे रही है जो की हरे और सफ़ेद रंग की है उसके बाहर के साइड गाड़िया दिखाई दे रही है ।

यह एक सैलून की अंदर की फोटो है यहाँ पर दो बड़े - बड़े आइने लगे हुये दिखाई दे रहै है।

आईनों के ठीक सामने दो बड़ी-बड़ी काले रंग की कुर्सियाँ रखी हुई है एक एल. इ. डी. टी. वी भी लगी नजर आ रही हैं।

इस फोटो में हमे सामने की तरफ कुछ पुरानी इमारते बनी हुई दिखाई दे रही है।

गले में एक सफ़ेद रंग का रुमाल लिया हुआ है।

फोटो में हमे दो बिल्डिंगे नज़र आ रही है ।

इस फोटो में हमें एक होटल दिखाई दे रहा है जो की सफेद रंग की ईमारत है जिसके बाहरी हिस्से पर खम्भे के ऊपर काले रंग का बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर लाल रंग से होटल लिखा हुआ है दूसरी तरफ एक बड़ा सा टावर बना हुआ है पीछे के तरफ कुछ झाड़िया और पेड़ बने हुए है ।

इस फोटो में एक बड़ी सी मूर्ति दिखाई दे रही है जो की ब्राउन रंग की है पीछे की तरफ एक बाउंड्री वाल दिखाई दे रही है जिसके ऊपर अलग-अलग चित्रकारीता बनी हुई है।